यहाँ आस पास बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं| यहाँ एक कुर्सी --

यह एक सैलून है| जहाँ एक आदमी खड़ा हुआ है और पास में एक और आदमी खड़ा हुआ है।

यह रोड है जिसपे बहोत सारे लोग जा आ रहे है यहाँ बहोत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है।